और दो कनजी दिखाई दे रहे हैं स्टील के।

इस चित्र में दो बच्चे चबूतरा के ऊपर बैठे हुए हैं एक पेड़ भी लगी हुई है एक बोर्ड भी है।

कर के बोर्ड में कुछ लिखा गया है।

और एक ब्लू कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है लेमन तड़का लिखा हुआ है कांच की खिड़की लगी हुई है।

एक फ्रिज भी है उसके पीछे और एक बड़ी सी बोर्ड टंगी हुई है।

इस चित्र में एक बकरी बैठी हुई है।

इस चित्र में एक कार खड़ी है और एक लड़का खड़ा हुआ है रेड कलर का बोर्ड टंगा हुआ है पीछे।

इस चित्र में बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है तीन--

इस चित्र में बहेते हुए पानी जा रही है।

ईट से बने हुए बैठने के लिए चेयर हैं झूला है।

झरना गिर रहा है एक ब्लैक कलर का बैग रखा गया है।

बगल में पेड़ लगे हुए हैं।

किसी चीज का प्रदर्शन कर रही हैं और कुछ लोग चेयर में बैठ के फोटो खींच रहे हैं और बहुत सारी रंग बिरंगे--

इस चित्र में सुंदर सा गार्डन दिख रहा है हरी हरी घास लगी हुई है जमीन में।

इसमें बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं नीचे नदी बह रहीं है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और--

इस चित्र में बहोत बड़ा ईंट से बना हुआ घर--

और बहोत सारे डब्बा में कुछ सामान रखे है और कांच के स्टैंड के अंदर एक चेयर है एक पंखा भी है।

ये एक टेंपल है जिसमें दो इंसान सीढ़ी से चलते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं और बाजू में एक पेड़ है।

इस चित्र में बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप में कोई इंसान नहीं दिख रहे हैं।

एक नारियल का बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं एक रोड है जिसमें--

इस चित्र के अंदर बहुत सारी ऑटो खड़ी हुई है।